जो की मरा हुआ मछली होगा कच्चा वाला--

और लोग यहाँ पे खरीदने आते है ताकि वो मछलिया खा सके--

सामने में लिखा है की रजिसनल -

और ये ऐसा लगता है जैसेकी कोई सा--

इस इमेज में मुझे बड़ा-सा ईमारत दिख रहा है बड़ा-सा बिल्डिंग है जिसे मेंटेनेंस किया जा रहा है बनाया जा रहा है।

मेंन मेंटेन कर रहै होंगे मतलब इसे बना रहै होंगे।

और वो लोग शायद फ़ोन में बात कर रहै है बगल में कोई सा दुकान है किनारा स्टोर है।

और सूर्य भी निकल रहा हैं धीरे-धीरे--

वाहन लेके आते हैं यहाँ पेट्रोल डीजल भरते हैं।

अच्छे से चलने लग चलती है।

छोटा सा कोकड़ा दीखता है पक्षी--

डोसा लगा हुआ है धोषा पे --